और बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है एक ब्लू कलर में आए बेटी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा है।

फूलों की मालाएं दिख रही हैं विंडो में कर्टन लगे हुए हैं।

यहां सामने मुझे अ ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में बहुत सारे--

अ रिंग रिंग स्लाइडिंग है वाइट कलर के स्लाइडिंग है।

और बीच में पानी है पूल बना हुआ है।

लाइट्स दिख रहे हैं बाहर साइकिल के रिंग टंगी है साइड में भी--

यहां सामने मुझे ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड के बीच में रोड है।

यहां सामने बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं काउंटर दिख रहा है काउंटर के ऊपर फोल्ड किए हुए कपड़े रखे हुए हैं कुछ काउंटर में नीचे रखे हुए हैं।

सामने मुझे बहुत सारे टेबल चेयर रखे हुए हैं टेबल पर ब्लैक प्लेट रखी हुई है कटोरी रखी है बोतल रखी है।

सामने डेक्स दिख रहा है डेक्स में भी बड़े-बड़े बाउल रखे हुए हैं और ऊपर डेको वॉल डेकोरेट किया हुआ है कर्टन है।

सामने सड़क दिख रही है और एक आदमी है जो ट्रॉली लिया हुआ है।

और कार खड़ी है रेड कलर की सामने बड़े-बड़े पेड़ हैं पौधे हैं।

और एक ग्रीन कलर का छोटा सा रूम है सामने लोहे का गेट है गेट के अंदर बहुत सारे--

लोग हैं सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं।

या मुझे बड़ा सा रूम दिख रहा है ट्रांसपेरेंट क्लास लगी है।

बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं टेबल पर कॉपी है उनके हाथ में।

पहन ले हुए हैं पीछे कैमरा लगा हुआ है फैन लगा हुआ है।

और पीछे रैक बना हुआ है रैक पे कुछ सामान रखा हुआ हैकबोर्ड़ है।

काउंटरों पे क्रीम पाउडर अ डब्बा रखा हुआ है और एक टी_वी है।

सामने एक रोड दिख रही है रोड के साइड में पेड़-पौधे लगे हुए हैं और सामने एक मंदिर जैसा दिख रहा है।

और खंभे लगे हुए है खंभे में बहुत सारे वायरे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से।

ट्रांसपेरेंट मिरर ब्लू कलर का लगा हुआ है और आसपास में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं बगल में चिमनी है जिसमें से धुआं निकल रहा है।

यहां सामने रैक रखा हुआ है।

सामान रखे हुए हैं कॉपी किताबें भरी हुई हैं कुछ लोग भी हैं।

यहां सामने दो कार दिख रही है कार को वॉश किया जा रहा है।

दुकानें हैं दुकान के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं।

एक रूम है रूम में बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के चेयर रखे हुए हैं ग्रीन कलर के टेबल है कुछ मशीन है।

यहां मुझे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में घास है और पोल से पोल में वायर्स बहुत सारे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सामने बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही हैं बहुत सारे विंडो है गेट है।

बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है कैमरा लगा हुआ है।

यहां एक ग्राउंड है ग्राउंड मे तीन पुतले खड़े हुएं हैं।

दो पिंक कलर के हैं एक ऑरेंज कलर का है और बहुत सारे लोग हैं।

और बहुत पेड़-पौधे हैं और झंडा दिख रहा है।

यहां दुकान दिख रही है ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हैं जिनमें एक बोर्ड लगा हुआ है में --

विनायक लॉटंग से इंजीनियर का दुकान है एक वाइट कलर में क्रिमटोन लिखा हुआ है जिसमें लाइट्स चल रही हैं दुकान के बाहर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

एक टेबल है टेबल के ऊपर बहुत सारा प्लेट्स रखा हुआ है कटोरी रखी हुई है।

वाइट कलर की प्लेट्स है स्टील का बाउल है पानी की बॉटल है पर्स रखा हुआ है।

एक दुकान दिख रहा है सीढ़ियां लगी हुई है स्टील की रेलिंग लगी हुई है सामने कांच है।

और फूलों की मालाओं से सजा हुआ डंडा लगा हुआ है गाड़ियां खड़ी हैं रक्स रखा हुआ है पोस्टरें रखी हुई हैं।

ये एक हॉल दिख रहा है जिनमें सीढ़ियां है गेट है खिड़कियां है।

कबर्ड रखा हुआ है टेबल और चेयर रखे हुए हैं चेयर --

और एक काउंटर है काउंटर के पास चेयर है।

एक बोर्ड लगा हुआ है लाइट्स लगी हुई है।

काउंटर के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैंरैक के अंदर एक कबर्ड है कबर्ड के ऊपर भी सामान रखा हुआ है।

साइड में एक पेड़ है पेड़ के पास बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं।

बहुत सारा सामान रखा हुआ हैहेलमेट रखा हुआ है दुकान के अंदर।

हमने गाड़ी है डिजाइनर लाइट्स तंग्गी हुई है।

और ब्रेंच है नीचे मार्बल लगा हुआ है ग्रीन कलर का वॉल है जिनमें पेंटिंग टंगी हुई है।

सामने मुझे हॉल दिख रहा है हॉल में कुछ रैक लगी हुई हैं नीचे ब्लैक कलर की मैड बिजी हुई है।

और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें येलो कलर पे ओनली फॉर लेडीज लिखा हुआ है।

और बहोत सारे ग्राउंड में कार खड़ी हैं।

ब्लैक कलर के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां मुझे एक लंबी गली दिख रही है पीछे बहोत सारी विंडो है और--

और एक गेट दिख रहा है सीढ़ियों के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

ये सामने एक रूम दिख रहा है रूम में लाइट्स लगी है।

और एक छोटा सा मंदिर है मंदिर के अंदर भगवान जी रखे है।

और उसके आ मंदिर के आगे बहोत सारी लेडिजे और जेंट्स बैठे हुए हैं लाइन से--

डिजाइनर लाइट्स टनी हुई है वाइट कलर का--

कार्टन लगा हुआ हैऔर एक ब्रीज रखी हुई है डेक्स है।

और सोफा लगा हुआ है चेयर रखी हुई है टेबल रखा हुआ है।

लकड़ी के डंडे रखे हुए हैं आसपास में पेड़ पौधे हैं और एक लड़का--

ब्रांच पे खड़ा हैजो लकड़ियां पास कर रहा है दूसरे आदमी को आसपास बहुत सारे पत्थर है।

और कुछ आदमी खड़े हैं पास में दुकान के सामने।

सामने बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है।

ये मुझे एक हॉस्पिटल का रूम दिख रहा है फिर में हॉस्पिटल वाले बहुत सारे बेड रखे हुए हैं हर बेड के नीचे डस्टबीन रखा हुआ है।

ये एक वॉल है और वॉल पे बहुत सारे बलून लगे हुए हैं।

और पास में टेबल रखी हुई है वॉल पे एक पोस्टर टंगी है।

बलून दिख रहा हैं और एक कॅफे के बा कॅफे दिख रहा हैं।

यहां तीन लड़के दिख रहे हैं और नीचे मैट बिछी है।

और बहुत सारी मशीन रखी हुई हैं लड़के के हाथ में मोबाइल है।

औ एक बैनर लगा हुआ है जिस पे हॉली हार्ट स्कूल लिखा है।

और वो बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां हैं।

और बहुत सारी वायर खंबे से लगी हुई हैं।

सामने मुझे बहुत सारे टायर दिख रहे हैंऔर कुछ लोग बैठे हुए हैं दीवार पे पोस्टर लगे हुए हैं नीचे टाइल्स लगी हुई हैं।